यहाँ पे बहोत सारा मैदान डला हुआ आयेगा।

लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं जो चोकोर बना हुआ है।

उधर कुछ लोग जा रहे है सामने कार खड़ी हुई है नीचे रेड चद्दर बिछी हुई है बाजू में पेड़ है।

और जिसमे ऊपर गुम्बते बनी हुई हैं काफी सारी खिडकियां भी लगी हुई हैं।

बाजु में उसके पीछे दीवाल है सामने काफी सारे लोग बैठे हुए हैं बाजु में कुछ खड़े हुए हैं।

नीचे उसकी शटर लगी हुई है बाजु में कुछ रखा हुआ है जो चोकोर है उसके बाजू में बहौत बड़ा घर बना हुआ है।